ए नदी है उसमे नदी में --

आदमी सब बैग लेके खरा हुआ है।

मस्जिद का गेट पे --

हजाम का दुकान है। ये हजाम उसका एक आदमी का बाल बना रहा है।

यहाँ पर दो ठो लोग तजिआ बना रहा है।